पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं और यहाँ --

यहाँ पे हमें एक जेंट्स दिखाई दे रहा है जो की हल्का बैंगनी कलर में शर्ट पहना हुआ है।

जो की इस्त्री करके लाइन से सजाकर अलमारी में रखें हुए हैं और यहाँ पे --

लाइट्स लगी हुई है और यहाँ पे पोस्टर भी टाँगा हुआ दिखाई दे रहा है।